यहां पर एक ढाबा दिखाई दे रहा है सामने अंदर बहोत से लोग बैठे हुए हैं।

यहां पर बहोत सी बसें खड़ी हुई हैं यहां पर बहोत लोग खड़े हुए हैं।

यहां पर एक बड़ा सा पोस्टर है जिस पे भारतीय स्टेट बैंक लिखा हुआ है।

यहां पे एक लाल रंग की टी शर्ट पहने स्टेच्यू खड़ा है।

यहां गाड़ी की सर्विसिंग हो रही है पास में एक टायर खुला हुआ पड़ा है।

यहां पर छोटी छोटी घास उगी हुई है आसपास जाल लगी हुई है पीछे पेड़ पौधे लगे हुए जो काफी बड़े हैं।

यहां पर बिल्डिंग है जो काफी पुरानी लग रही है उसे पर एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

यहां पर लिखा हुआ है दीवाल पे वैभव कंप्यूटर्स ।

यहां पर दो लोग खड़े हुए है यहां एक कुर्सी पे काले रंग का बैग रखा हुआ है।

यहां पर छोटी छोटी घास उगी हुई है मिट्टी है।